इस इमेज मे एक फ्रिज है फ्रिज के अंदर दो केक रखे हुए है एक येलो कलर का है एक पिंक कलर का है दोनों के ऊपर अलग अलग फ्लेवर हैं।

तथा इस के अंदर कुछ आइस -क्रीम रखी हुई है तथा एक मांगो ज्यूस की बोटल रखी हुई है काफी अलग-अलग फलेवर्स मे आइस -क्रीम रखी हुई है।

इमेज मे तीन वर्कर है जो दो वर्कर वर्क कर रहे है एक वर्कर खड़ा है और यहा पर सिमेन्ट की बॉडी रखी है पास मे गिट्टी रखी है गिट्टी के उपर बाल्टी रखी है।

इमेज मे काफी बड़ा हॉल दिख रहा है दोन कुछ लोग यहा प बैठे हुए है कुछ लेडिसे बैठी हुई है एंड कुछ बच्चे बैठे हुए हैं।

इसमे मार्केट दिख रहा है मार्केट मे काफी सारे लोग है काफी सारे लोगों की भीड़ है तथा कुछ फ्लॉवर्स दिख रहे है फ्लॉवर्स काफी सुंदर दिख रहे है कुछ फलोवेर वाईट कलर के है कुछ फ्लॉवर्स येलो कलर के हैं।

काफी ईन्जॉय कर रहे है वो और काफी पानी से ईन्जॉय कर रहे है और हाथी के ऊपर एक पर्सन पानी छिटक रहा है।

एक इमेज है इमेज मैं भोलेनाथ जी की प्रतिमा है भोलेनाथजी के गले मैं सर्प है उनके पास मैं एक त्रिशूल रखा हुआ है साथ मे एक हनुमान जी की प्रतिमा है हनुमानजी के हाथ मैं एक घोटा है और उनके सर पे मुकुट है।

सारी महिलाये हाथ जोड़ के खड़ी हुई है डिफरंट डिफरंट कलर की साड़ी पेन रखी है और जो जेन्ट्स है उनके हाथ मैं अगरबत्ती है और वो हाथ जोड़ के खड़े हुए है और वो पानी मैं खड़े हुए है काफी--

किसी ये एक फैक्टरी है फैक्टरी मैं बहोत सारे वर्कर वर्क कर रहे है कुछ वर्कर ने केप पहन रखी है कुछ वर्कर खड़े हुए है कुछ वर्कर वर्क कर रहे है।

कुछ पर्सन गार्डन मैं खड़े हुए है और नीचे घास हैकाफी हरी घास है उसके जस्ट प्लस बाजुमे एक पेड़ है पेड़ काफी हरा भरा है और काफी पुराना है।

ये एक इमेज है इमेज मैं काफी सारे लोगों की भीड़ है कुछ बच्चे है कुछ गर्ल्स है और कुछ बॉय्ज़ है कुछ जेन्ट्स है कुछ औरतें है और यहाँ पर कुछ जेन्ट्स खड़े हैजिन किसी के हाथ मैं हेलमेट है एक हाथ मैं मोबाईल है।